एक पार्क दिखाई दे रहा है। जहाँ पर छोटे बच्चों के खेलने के लिए काफी कुछ नजर आ रहा है। वहाँ पर सिटिंग बेंच दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति वहाँ नजर आ रहे --

और ऐसी वहाँ पर दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद रंग का नजर आ रहा है और वहाँ पे काफी सारी बाइक्स पार्क की गई है। बाइसिकल नजर आ रही है और काफी हरी घास दिख रही है और वहाँ पर जे.सी.बी. मशीन नजर आ रही हैं।